इस फोटो में एक स्कूल के बोर्ड को दर्शाया गया है उसके पास में ही बहुत सारे पेड़ पौधे गमले में लगाए गए हैं।

इस तस्वीर में सैलून दिखाया गया है।

इस तस्वीर में बहुत अच्छे फुहारों को दर्शाया गया है और बहुत लोग जैसे स्त्री और पुरुष बैठकर इन फुहारों को देख रहे हैं और यह फोटो रात में ली गई है।

तस्वीर में एक बस है। जिसमे कुछ लोग लड़की भी पास नही है।

इस तस्वीर में गणेश जी की मूर्ति दिखाई दे रही है। एक लोग बैठे है।